पेड़ो का कलर हरा है घर का कलर सफेद है और बोले तो पानी कलर भी --

बोले तो घर का कलर लाल है।

यहां पर बड़ा सा घर बना हुआ है और बड़ा सा गेट भी लगा है और यहां बड़ा सा मैदान भी है। इस इस घर का कलर नीला और सफेद है।

ऊऊ-- यहां पर आज बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं और पेड़ भी लगे हुए हैं। ऊऊ-- दुकान बनी हुई है।

यहां खंभे लगे हैंतार लगे हैं खंभों का कलर काला है और तार का कलर सफेद है।

गेट लगे हैं और खिड़कियां भी लगी है लोगों का कपड़ों का कलर नीला पीला गुला --